यहां पर एक सोफा है। सोफा के ऊपर एक लैपटॉप है।

आस पास पंखे हैं। यहां पर गुब्बारे लगे हैं जो लाल और सफेद रंग के दिखाई दे रहे हैं।

वहां पे एक आदमी पीले रंग की टी शर्ट पहने बैठे हुए है।

यहां पर एक औरत खड़ी हुई है जिसने मास्क लगा रखा है।

यहां पर एक काले रंग की कुर्सी पड़ी है जिस पर तोलिया पड़ी है।

आसपास लाइट जल रही हैं यहां पर पर्दे भी हैं।

यहां पर एक टीन पड़ी हुई है यहां पे बहोत से लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर पेड़ लगे हुए हैं जो काफी बड़े हैं।

सामने स्टेज है उनमें बहुत सी लाइट लगी हुई है।

यहां पर एक बेड पड़ा हुआ है। जिस पे सफेद रंग की चादर बिछी हुई है।

यहां पर दो रस्सी दिखाई दे रही हैं जो सफेद रंग की हैं।

यहां पर पीले रंग के पर्दे हैं आसपास लाइट जल रही है।

यहां पे कुछ आदमी खड़े हुए हैं जिन्होंने बैग टांग रखा है।